ट्रैन्स्फॉर्मर है जो एसी को डि एसी को मलतब हाय एसी को लोड एसी में कन्वर्ट कर देता है जहाँ से हमारे घर के लिए सप्लाई मिलता है और बगल में टावर है जो नेटवर्क का है।

बैकग्राउंड इसका बहुत ही अच्छा है। अच्छे-अच्छे चीज यहाँ मिलते हैं। देख सकते हैं फूल-वूल डेस्क पे रखा हुआ है जो कि अच्छा एक अट्रैक्टिव का साधन माना जाता है।

यह वाटरपार्क दिखाय गया है बेगूसराय का इसमें बच्चे ब लड़के लड़कियाँ सभी आते हैं।

तो यहाँ आके पेमेन्ट कर के पिज्जा खा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है।